पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सर्ट चल रहा है और यहाँ पर परफॉर्मन्स चल रही है।

यहाँ हमें बडा-सा दरवाजा दिखाई दे रहा है जिसपर मम माता का मंदिर --

और सीढ़ियां दिख रहीं है।

कोर्ट दिखाई दे रहा है।

और यहाँ एक वेटर जो सर्व कर रहा है।

और इस पर एक नेमप्लेट भी लगाई गई है।

एक चेयर रखी हुई है चेयर पर एक छोटा-सा गिटार रखा हुआ है।

पीछे एक लड़का खड़ा है पीछे जिम दिखाई दे रही है और जिम की मशीन्स रखी हुई है।

यहाँ हम मंदिर देख रहे हैं जहाँ पर माता की मूर्ति दिखाई दे रही है और माता की मूर्ति को --

और यहाँ पर बास्केट में बहोत सारा सामान रखा हुआ है|

यहाँ हमें एक लड़का दिखाई दे रहा है जो फोटो खींच रहा है बैंक के ए.टी.एम. की और यहाँ पर हमें --

हॉल में काफी सारी चेयर रखी हुई है बैठने के लिए।

कुछ डिब्बों मे बिस्किट रखे हुवे हैं।